यहाँ पर बहुत सारी पनियां आ रही है। पत्थरों के द्वारा पत्थर पर पानी आ रही है टकरा - टकरा के जो बहुत ही अच्छा लगता है देखना यहाँ पर नहाने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये पानी --

यह एक दुकान है। जहां पर बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई अलग - अलग प्रकार के वस्तु रखी अलग - अलग प्रकार के सामान रखे हुए जिन्हें आप पैसे देके खरीद सकते हो।

ताकि इस बॉल को पकड़ कर उसमें डालनी पड़ती है तभी जीत होती है। इसलिए घर बनाया गया सारे नियम रूल्स के अनुसार खेलते हैं। ये घर बहुत ही अच्छे हैं। ये घर खेलने के लिए बनाये गये हैं और इस घर को जिस प्रकार बनाया गया है ताकि कम्फरटेबल से खेल सके।

यह घर बहुत ही अच्छा हैं। यह घर सफ़ेद कलर के कारण देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें बहुत सारे पोस्टर लगाये गये हैं पेंट करके जो बहुत ही अलग अलग कलर के --

कुछ पिटे हुए जहाँ पर दो एक औरत एक जेंट्स दोनों आपस में बात कर रहे है ताकि कुछ बात बात कर सके नीचे में जो मार्बल लगी हुई है बहुत खूबसूरत है।

इस घर को बहुत अच्छे प्रकार से सजाया गया है। सितारे लगाए गए है कुछ रस्सीयो के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर कोई माइक पर बोलने की कोशिश कर रहे --

बहोत सारे लड़की लोग छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए है कुर्सी पे और इनकी बाते सुनने की कोशिश कर रहे हैं। जो बहुत अच्छी प्रकार से सजायी थी।